यहां पास खिड़की भी दिख रही है यहां पास चेयर भी नजर आ रहा है।

यहां एक पुल टाइप से दिख रहा है यहां पर सीढ़ी भी नजर आ रही है।

डस्ट बिन है ये--

यहां पौधे भी नजर आ रहे हैं।

ये एक पार्क नजर आ रहा है।

इधर बहोत सारी गाड़ी नजर आ रहे हैं।

नीचे में पत्थल लगे हुए हैं।

ये ए यहां एक बड़ा सा दुकान है।

एक दीदी बैठी हुई है जो कि येलो कलर की पहनी हुई है उसके हाथ में फोन रखाया हुआ है।

व्हाइट कलर का कप है यहां दो हैंकी पड़ी हुई है।

इधर सीढ़ी भी दिख रही है।

यहां काज भी लगा हुआ है।

लगा हुआ है रंग बिरंग का यह दुकान भी नजर आ रही है।

और यहाँ पर घास-फूस पेड़ृ-पौधा भी नज़र आ रहा है यहाँ पा यहाँ पास पानी बहोत --

व्हाइट कलर में है यहां पास घास फुस--

और यहां पास बर्तन वगैरह भी है।

गाड़ी भी नजर आ रही है।

यह ये तो एक पुल टाइप सा दिख रहा है।

यहाँ घास फूस पेड़ भी नजर आ रहा है।